एक जनरल स्टोर ह इमे राखी सी टंग रही है। एक आदमी खड़यो है और पोस्टर लागरियो है।

एक स्टेज है स्टेज पर सा-सत्संग करो लागरियो है और रूम कमरों है इमा गेलान पोस्टर भी लागरियो है आदमी--

पंखा भी दिखाई दे रहा है नाम लिख रहे हो तो सब बोल्ड भी लग रहे हो दरवाजा भी दिखाई लग रहे हो और इने भी मशीन पड़े हैं।

ओ जिम है इम खम्भे के ऊपर पोस्टर लाग रियो है बॉडीबिल्डर को और मशीन भी पड़ी है डंबल भी पड़े है दिखाई दे रहे है और और लाइट भी लागरी है फैन भी दिखाई दे रहे है और--